इस तस्वीर में मुझे बरा बरा सफेद सब दिखाई दे रहा है।

मशीन सब भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में रेड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।

वे इंसान भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में लाइट भी जल के दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बंधन बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

ऊपर मे फैन सब भी दिखाई दे रहा है।

बॉल भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में ग्रास सब भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में पत्थर लगे हुए दिखाई दे रहा है।

बादल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पत्ता से बना हुआ एक घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे खाने का चीज सब भी दिखाई दे रहा है।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

में मुझे व्हाइट कलर का दीवार सब दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

घर में टीना भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में खड़ा हो के एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

मुझे ये तस्वीर में दीवार भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे खाने का सामान सब रखे हैं।

पीछे में ब्लू कलर का डस्टबिन भी रखे हैं।

साइड मे लाइम बल्ब जल के भी दिखाई दे रहा है।